पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़की भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

व्यक्ति भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

सामने दो दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही है।

सिढी लगी हुई दिखाई दे रही है।

पेटीएम लिखा हुआ स्कैनर दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति अपने हाथ में एक बुक लिए हुए खड़ा हुआ --

सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक तिरंगा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।